यहां पर मुझे एक कुर्सी दिख रही है उसके मुझे यहां पर एक टेबल भी दिख रही है।

यहां पर मुझे एक दीवाल दिख रही है यह वाइट कलर की है।

एक आदमी का हाथ भी दिख रहा है यहां मुझे यहां पर जमीन पे पड़ी मिर्ची दिख रही है।

मुझे यहां पर उस पलंग में पिलाई लगी दिख रही है।

उसका कलर हरा है मुझे यहां पर एक रोड नजर आ रही है।

मुझे यहां पर एक टीन का बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है उसका कलर व्हाइट है।

मुझे यहां पर दो ट्यूबलर नजर आ रही है।

मुझे यहां पर एक इंसान व्हाइट कलर की शर्ट पहने नजर आ रहा है।

मुझे यहां पर एक बड़ा सा पीला कलर का मकान दिखाई दे रहा है।